यहाँ पे से कब कहीं भी अपना सामान ढो सकते हैं तेल का खर्च नहीं लगेगा।

अपने अल्लाह से दुआ करते हैं के अपना बरकत अपने उपर बनाए रखे और अपनी दुआ को कुबूल करे।

यह किसी छेत्र का दृश्य है जहाँ बिहार सरकार द्वारा योजना चलाए जा रहे हैं पर --